बगल में एक बहुत ही बड़ा सा खेत है जोकि हरे रंग का है।

इस में गाजर प्याज टमाटर मूली खीरा और मटर का भी बीज है।

लड़कियों के ऊपर में बहोत सा डिजाइन बना हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा क्लीनिक है जिसका दीवाल का रंग सफेद है।

खिड़की के पास दो बड़ा बड़ा पर्दा लगा हुआ है।

इस फोटो में एक छत है जिसके दीवाल का रंग सफेद है और सामने लोहे का रेलिंग लगा हुआ है।

यहां एक बड़ा कंप्रेसर का मशीन रखा हुआ जिसका तार पार हुआ है जो काला और लाल है।

ये रूम भी बाहर से पूरा सफेद है ऊपर इसका पूरा डिटेल और एड्रेस लिखा हुआ है जो लाल नीले रंग में लिखा हुआ है।

इस फोटो में सामने दो ट्रक खड़े हैं।

सभी के बाहर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जो कि अलग अलग रंगों का है।

सामने बहुत सारे आदमी लोग है और बहुत सारी बाइके खड़ी है।

बहोत सारे मोबिल के डब्बे और ग्रीस के डब्बे रखे हुए हैं।

बिन आदमी के चलते पूरा छाव भी बना हुआ है।

सामने काउंटर है काउंटर के पास एक फोन पे का क्यू_आर कोड लगा हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है।

सामने एक ईट से बना बड़ा बिल्डिंग है जिस पे प्लास्टर नहीं हुआ है।

इस फोटो में सामने बहोत सारी लाइन से घर है जो कि करकट का है और इसमें ईंट से दीवार बना है जो कि स्काई ब्लू रंग का है।

बहुत सारे गेट हैं सभी में लोहे के।

साथ में बहुत सारी लाइटे अंदर में भी जल रही है और बाहर में भी बहोत सारी लाइटें जल रही है।

लोहे के रैको का रंग ग्रे कलर का है।

जिसमें ऊपर तीन नीले रंग के भी डब्बे है।

और बगल में कुछ डब्बे हैं जो काले सफेद और पीले रंग के हैं।

इस फोटो में सामने काफी बड़े बड़े बिल्डिंग है जो की सफेद और लाल रंग के इसमें पट्टी जैसा बना हुआ है।

बहुत सारी खिड़कियां हैं खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं और बहुत सारे फ्रेम लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा रूम है जिसके दीवार का रंग तो हरा है।

अमने एक गेट है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

पिले काले और लाल और सफेद रंग के हैं।

पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसका रंग नीला लाल सफेद और पीला है।

बहुत सारे चप्पल और जूते का सामान रखा हुआ है।

दुकानों में बहुत सारे रैक है रैकों में बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक दुकान है जिसमें की रैक है।

रैक पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने बहुत ही बड़ा सा जगह है यहां दीवाल पर बहुत सारे कपड़े टांगे हुए है।